जैसा कि हमें यह दिखाई दे रहा है की ये एक ए_टी_एम् है और इस ऐ_टी_एम् के बाहर हमें बहोत एक एम्_पि ऑनलाइन की दुकान दिखाई दे रही हैं ।

और सारी तरफ हमे मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है जो की यहाँ सामने की ओर--

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक गार्डन है और इस गार्डन में हमे रंग-बिरंगे फुल दिखाई दे रहै है।